आयोजन में एक छोटा बच्चा भी हाथ जोड़े-- नमस्कार करे हुए खड़ा--

यहाँ पर एक बहुत सुन्दर मुर्गे जैसा पक्षी है यह एक प्यारा सा मुर्गा है इसके --

एक नीले रंग की पेटी में कुछ आंगुर भी हैं।

और कुछ व्यक्ति पुस्तकालय के अंदर हैं।